यह किसी पार्क की है यहां पे साइडो पे पौधे लगाए हुए हैं।

और बहुत सायादार दरख्त लग रहे हैं।

मोटरसाइकिल की वर्कशॉप है यहां पे लड़का मोटरसाइकिल ठीक कर रहा।

बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है समथिंग मुंह उसी तरफ है।

दवाई मिल जाती है बहुत मशहूर ये ऋषि मेडिकोस है।

लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं।

ये जो यहां पे पेट्रोल पंप दिखाया गया है जहां पे बड़ा रश है।

आंखों को बहुत ही भला लग रहा है।

और इधर रेंप पे--

यह या तो मजदूरी करते हैं और या ड्राइविंग करते हैं।

जहां से आप हर तरह की अदवियात ले सकते हो।

जहां पर दूर दूर पानी फैला हुआ है।

और बहोत ही बढ़िया नजारा है।

जो पार्क है यहां पर लोग आते हैं सुबह की सैर करने के लिए और बच्चों को घुमाने फिराने के लिए--

क्या इसके खूबसूरत से फूल है और क्या एंट्रंस है।

ये एक बड़ा साफ सुथरा सा पार्क दिखाया गया है।

यहाँ पर हर तरह की चीजें मिलती हैं।

ये दुकानों का मंज़र है जहां पर खवा --